और सब कुछ ना कुछ डेकोरेट कर रही है क्राफ्ट से उनके हाथ में पेपर्स है वो कुछ ना कुछ तस्वीर बना रहे यहां पे उनकी मैम --

यहां पे बिल्डिंग का काम चालू है इटो से दीवार बना रहे--

यहां पे एक चर्च है चर्च को बहुत ही अच्छे तरीके से लाइटिंग से सजाए है।

पीछे उसका मछली का कचरा है साइड में रखा हुआ है सब।

हरा भरा घास है उसपे लड़कियां शायद पौधे लगा रही है कुछ लोग खड़े है कुछ लोग बैठे है।

उसके ऊपर सब बैनर लगा हुआ है मराठी में इंग्लिश में की पब्लिक हेल्थ ऑफिस है।